यहा पे एक हॉस्पिटल है हर्ष हॉस्पिटल यहा पे बहोत सारा ट्राफिक जाम है यहा पे एक पावर गला म-म वोल्टेज वाला भी है टावर है।

एक गाड़ी है बहोत सारे लोग हैं यहा पे और पो-पोधा है।

यह एक जिम का सेटअप है जो कि जिम कुछ लड़के कर रहे है कुछ लड़किया भी है ।

यह एक कॉलेज है जो कि कॉलेज की बहुत ही सुंदर गार्डन गार्डन है और बैठने के लिए कुछ बना हुआ है यहाँ पे एक पेड़ भी है पतला सा दिख रहा है।